यहां पर एक बहुत ही सुंदर नर्सरी है जिसे बहुत ही अच्छे से--

और प्लेटफार्म पर जो ब्रिज होता है वो बहुत ही सुंदर है।

और राइट साइड में रेलवे की बाउंड्रीज दिख रही है प्लेटफार्म की।

और यह सामने से एक गोलाकार आकृति में बनी है यह दोनों तरफ से बहुत--

एक छोटे रूप में पानी आ रहा है और यह बहुत बड़े तालाब के रूप में यहां पानी भरा है।

यहां पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है जिसमें अ अ कुछ हरी सब्जियां हैं और कुछ लहसुन है गाजर है प्याज है।

बाइक खड़ी है सामने से एक रोड गया है रोड पर से भी लोग जा रहे हैं।

यहां पर एक शॉप है और शॉप में बहुत सारा सामान ।

यहां पर एक स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रहा है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं।

और रोड के साइड से बहुत सारी बाइक खड़ी है और सामने की तरफ एक लोहे की रेलिंग ।

बनी हुई है जिस पर बहुत सारे लोग टिककर खड़े हुए हैं सामने और भी लोग हैं।

यहां पर रेलवे प्लेटफार्म है रेलवे प्लेटफार्म के दोनों तरफ अभी प्लेटफार्म खाली है।

यहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है।

यहां पर एक बकरी का छोटा बच्चा बैठा हुआ है।

जो पूरा पीछे की तरफ से काले कलर का है इसका फेस और कुछ पैर --

और रोड से कुछ लोग सामने की तरफ से जा रहे हैं।

पौधे रखे हुए हैं कुछ टेबल रखे हुए हैं एक वाइट कलर की बिल्ली खड़ी हुई है बाहर भी बहुत से पेड़ हैं।